और बात करें हम आसमान के वातावरण की तो यहाँ पर शांत बहता हुआ पानी आसपास के घर --

आपको इससे बहुत सारा मार्गदर्शन और शांति भी मिलेगा।

उसी के नी-नीचे दिखेगा आपको एक छोटा सा नदी अगर आप इसे ध्यान से देख पाओ तो।

रात के समय पर अगर इन मजदूरों को आप काम करते हुए देखोगे तो आपको बहुत सारी इ मन में आशाएं आएँगी |

कि वो कितने सुंदर है साथ ही यह दृश्य कितना सुंदर है।

और आप भी कभी घूमने गए हों तो आपको ऐसी चीजें कहीं न कहीं देखने को जरूर मिल गई होंगी |

ये फूल बहोत सारे जगह पर उसे होता है शादियों में धार्मिक स्थलों पे।

साथ ही में अगर आप इसकी बनावट की बात करो तो ये बहोत ही ज्यादा पुरानी और अनोखी है।